हल्ला देख सकते है यहाँ पे काफी सारे ये दीदी लोग बात कर रहे है फ़ोन पे और कुछ कुछ बोल रही है देख सकते है। सब लोगो को काफी मस्त दिखाई दे रही होगी।

यहाँ पे बच्चे आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं झंण्डा वगेरा लगाया हुआ है और हरा-भरा दिखाई दे रहा होगा आपलोगो को और नारियल का पेड़ वगेरा हैं देख सकते हैं और सफ़ेद कलर किया हुआ--

हेल्लो देख सकते हैं ये जिम सेन्टर और काफी बड़ी है देख सकते हैं यहाँ का लुक भी आप लोगो को बहोत ही जबरजस्त दिखाई दे रहा होगा और काफी मूव देख सकते हैं इसमें ।